पीछे सफेद कलर की बिल्डिंग नजर आ रही है।

रोड पर साइकिल बाइक चलती हुई नजर आ रही हैं।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

और टेबल चेयर भी रखी हुई हैं।

बहुत सारी किताबें रखी हुई हैं।

पीछे के साइड एक बिल्डिंग बनी हुई है।

हरे हरे पत्ते भी नजर आ रहे हैं।

चारों तरफ हरे भरे पेड़ लगे हुए हैं।

जहां पे बहुत सारे रंग बिरंगे कलर के फूल लगे हुए हैं।

हमें इस फोटो में एक टैंक जैसा नजर आ रहा है।

जहां पे बहोत सारी लाइट लगी हुई है।

बहुत सारी मशीन भी लगी हुई हैं।

इलेक्ट्रिक वेहिकल की एजेंसी दिखाई गई है।

जहां पे बहुत सारे ई रिक्शा खड़े हुए हैं।

पीछे के साइड एक आदमी कुर्सी पे बैठा हुआ है।

बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं।

यहां पे ऊपर शुक्ला बुक डिपो का बोर्ड लगा हुआ है।